इस इमेज मे हमे दो मंदिर दिखाई दे रहे है दोनों ए--

इस इमेज में हमें एक मस्जिद दिखाई दे रही है मस्जिद के ऊपर हमें गुम्बद बनी हुई दिख रही है।

बहुत सारी खुर्सिया लगी हुई है जिनमे येल येल्लो कलर की है।

इस इमेज मे हमें एक लेडीज खडी हुए दिख रही है जो ऑरेंज कलर की साड़ी पहने हुए है।

इस इमेज में हमे एक स्टेज बना हुआ ऊपर दिखाई दे रहा है उस पर एक अच्छा सुंदर सा सोफा रखा हुआ है।